यहां पर सामने में बहुत सारे रैक बने हुए हैं।

अगल बगल कुछ बस ट्रैक्टर और बाइक भी नजर आ रहा है।

सामने में कुछ कुर्सियां रखी हुई भी नजर आ रही हैं।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

जहां पर सामने में बहुत सारे लोग टेबल कुर्सियों पर बैठकर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं।

बगल में एक सीढ़ी भी नजर आ रहा है।

यह एक बड़े से कॉलेज का चित्र है।

यह एक बड़े से होटल का रूम का चित्र--

जिसके सामने एक रोड भी नजर आ रहा है।

यह एक बड़े से चर्च का चित्र है।

यह एक दो मंजिल का छोटा सा बिल्डिंग का चित्र है।

यहां पर दीवाल में पिकनिक रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

टेबल पर कुछ ग्लास और बोटल रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर सामने में बहुत सारे टेबल कुर्सियां नजर आ रही है।

यह एक छोटे से फील्ड का चित्र है।

जिसमें एक छोटा सा कुटिया बना हुआ नजर आ रहा है।

अगल बगल बहुत सारे नए नए कपड़े रैक तथा नीचे रखे हुए नजर आ रहे हैं।

एक सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

कलरफुल लाइट से सजे हुए हैं।